ये एक स्कूल का दृश्य है जो मैं देख पा रहा हूं।

जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहा हूं यहाँ पे एक रंग मंच का कार्यक्रम चल रहा है मी काफी सारी स कुर्सियां यहाँ पर है और अ रंगमंच पे एक अ लड़का दिखाई दे रा दे रहा है।

पाटिल कोचिंग अकादमी के नाम से ये एक जगह है--

उपलब्ध है लाइटे यहा पे लगी हुई है ये एक तरेका पार्क का एक छोटा सा हिस्सा है।

इधर ये काफी सारी चीजे यहा पे है और बहुत सारे लोग यहा पे खड़े हुए है बड़े बड़े यहा पे --

काफी सारे घर यहां पर हैं और इसपे सफेद कलर की सफेदी की गई है।

दुकान है जिसमें की केक यहां पे बेचे जाते हैं।